पिक्चर मे कोई फंक्शन नज़र आ रहा है।

जिसमें सोफे लगे हुए है कुछ बैठने के लिए और--

खाने पीने की चीजे नजर आ रही हैं।

कुछ पीछे क्रेन वगैरह नजर आ रही हैं कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

और आगे की साइड कुछ चेयर नजर आ रही हैं टेबल लगी हुई हैं।